और पीछे एक घर है और कुछ लाइना भी जा रखी है।

और पंखा छत में लगा हुआ है और दीवार में कुछ खिड़कियां भी हैं।

और कुछ आदमी तेल डलवा रहे हैं।

और इसकी छत में पन्ना लगा रखा है और कुछ स्टूल धरे हुए हैं।

और इसके आस पास बहुत सारी हरियाली भी है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें प्लास्टिक के कुछ बर्तन धरे हुए हैं।

और बाहर सड़क पर कुछ दरी भी भरी हुई है।

और इस कमरे में बहुत सारी टाइला भी लगी हुई और बहुत सारी लाइटा भी है।

और इसके आगे एक आदमी खड़ा हुआ है।

और एक कुर्सी भी है और एक टेबल भी है।

और नीचे मैट बिछा रखा है और साइड पर कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है जोकि यह कांच की है।

यह एक मेडिकल साइंस सेंटर है और इसमें कांच के गेट भी लगे हुए है।

इस किश्ती में कुछ आदमी भी बैठे हुए है।

और साइड में एक सेंटर भी है और इसके अंदर बेंच और दो कुर्सी धरी हुई हैं।

और इस कमरे के अंदर कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं।